लाल पीले रंग की छत्री है जमीन का रंग चॉकलेटी है।

उसके गलो मे लाल सफेद रंग के फूलों का हार है।

ग्रे रंग का है सिल्वर --

ये चॉकलेटी रंग का क्रॉस है लाल रंग की--